जो खड़ी हुई है नीचे मिट्टी पड़ी हुई है और कीट भी लगी हुई है पीछे एक दीवाल है जिस पर इसमें कीट ही कीट जम रही है दुवा भी लग रही है।